इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और नीचे सुंदर डिजाइन बनी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक जाली का गेट दिखाई दे रहा है और अंदर एक कुआं भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक सलून दिखाई दे रहा हैं जहां पर एक लड़का कटिंग करता नजर आ रहा हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सियां रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है सामने येलो कलर का डस्टबिन रखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक चट्टान दिखाई दे रही है और हाथ ऊपर करके लड़का खड़ा नजर आ रहा है।

इस ईमेज में यहां पर एक कांच का बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर पीकॉक लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा है और गमलों में शो प्लांट लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पिंजरा दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ पपक्षी बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा पिलर दिखाई दे रहा है और सड़क पे एक साइकिल वाला नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक शादी का गेट दिखाई दे रहा है जहां पर लाइटे जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर दो तीन कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर बच्चों के टॉय रखे हुए नज़र आ रहे हैं कागज के बने हुए जो बहोत सुंदर लग रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है और एक महिला कुछ स्पीच देती नजर आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और बेंचेज पे कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर ये तो यहां मस्जिद दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर कुछ बिल्डिंग स्टेच्यू बने दिखाई दे रहे हैं जो बहोत ही खूबसूरत लग रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जोकि बंद है और नीचे सीढ़ियां भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर दो लड़के बैठे नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पानी का जहाज दिखाई दे रहा है और आसमान में सूरज ढलता नजर आ रहा है।